तो जैसा कि मैं आप जैसा की आप देख पा रहे हैं ये मछली पट्टी दिख रही है| मछली पट्टी में बहुत सारी मछली होता है बहुत सारी मछली टाइप का होता है| बहुत ही मेहेंगी-मेहेंगी मछली छपी है तो देखिये मछली सबका भी रेट --

जो झील जो दिखाई पड़ रही है झील से पानी जो बहुत ज्यादा स्वच्छ होती है और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो पानी वेगरह जो गिरती है न--

तो जैसे की लोग देख पा रहें हैं यह टेक्सटाइल फिटिंग अ शूटिंग शर्टिंग साड़ी ड्रेस मटेरियल दुपट्टा। यहाँ पे फैंसी सूट सलवार --

और आपको बता दूं और ये मछली जो है बहुत ही कम बहुत ही नदी नदी गहराइयों में जाके बहुत तभी जाके मछली उत्पन्न होती है और आपको बता दूं मछली का जो रेट है बहु महंगा होता है मरी हुई दिखाई पड़ी है। इसको लोग --

तो जैसा-जैसा की आपलोग देख पाए यहां पे देखिए इतने सारे लोग आए हैं नहाने धोआने के लिए। नहाएंगे धुआएंगे फिर यहां से मस्त होकर स्विमिग पूल वहाँ से जायेगे फिर यहां से लोग यहां से जो जाते हैं और मैं आपको बात देना चाहता हूँ यहाँ पे लोग जो न --

मजा आता है बहोत सारे लोग आदमी घूमते हैं। --

तो जैसा-जैसा की आप लोग देख पा रहे हैं ये जो तन्दूरा चाय स्पेशल स्पेशल है यहाँ देखिये यहाँ पे तो चाय-बिस्कुट यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है तंदूरी चाय स्पेशल टी चाय का भी टपरी जो बोलते जो मस्त--